सामने से एक बंदा आता हुआ दिख रहा है।

मिस यूनाइटेड किंगडम ऑफ इंडिया का बैंक का ऑफिस है और इसकी बिल्डिंग जो है पिंक कलर में पेंट की हुई हैं।

और पीछे जो एक पेड़ दिख रहा हैं और आगे कुछ कंट्रकशन का काम चल रहा हैं जिसमे पिलर रड वगेरा दिख रहा हैं।

डिग्री कॉलेज हैं डॉक्टर गणेश राय डिग्री कॉलेज सीतामढ़ी लिखा हुआ हैं इसपे।

आ जो कोको कोला कलर का बना है पेंट किया गया हुआ है सामने बहुत बड़ा ग्राउंड ह है।

--और दुकान के पीछे दरवाजा खुला है और दुकान का जो कलर जो है स्काई ब्लू से जो पेंट किया गया है।

मैरिज हॉल को सजाया गया है बहुत ही खूबसूरत से यह छाता पीला छाता को लेके उससे डिज़ाइन बनाया गया है।

--और ये ईट का बैरिकेड किया गया है अंदर बालू डाला गया है।